इसमें एल_सी_डी है एक दो अ शे एल_सी_डी इसमे दिखाई दे रही हैं और--

ये एक ऑफिस की तस्वीर है। जहां पे एक टेबल दिखाई दे रहा है टेबल के साथ चार--

ये एक बाजार की तस्वीर है जहां पे--

पार्क में सामान पड़ा हुआ है गत्ते के बॉक्सेस में पड़ा हुआ है और उस उसेपे रिबन --

ये डबल स्टोरी का घर है उसके ऊपर दो कमरे हैं तीन खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

ये तस्वीर एक पूजा की तस्वीर लग गई है इसमें बहोत अ--

तीन पुरुष और एक पंडित जी बैठे हुए हैं दो महिलाएं यहां पे खड़ी हुई--

कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं और दूसरे उनको समझा रहे।

बहोत सारे व्यक्ति यहां पे चेयर्स पे चेयर्स के ऊपर बैठे हुए हैं एक दीवार है दीवार के ऊपर घड़ी लगी हुई है।

वे अं वेटिंग में बैठे हुए हैं अपने--

और यहां पे बहुत सारी अ लाइट्स लगी हुई हैं ब्लैक कलर की एल_सी_डी जो सभी बंद है।

ये एक शहर की तस्वीर हैं जिसमें बहोत सारी इमारतें बनी हुई दिखाई दे रहीं हैं इसके साइड में ग्रीन ग्रीन कलर का मैदान हैं मैदान--

ये दृश्य है एक दुकान का जिसमें बहुत सारी--

ए एक दुकान का दृश्य है जिसमें ब्राउन कलर का एक टेबल लगा हुआ है।

जो की डीज डिजिटल मार्केटिंग एंड प्रमोशन हब से रिलेटेड है।

इसमें टमाटर की खेती की हुई है लहसुन लगा हुआ है और--

और इसके इसके सामने सफेदे के प्लांट लगे हुए हैं उसके पास में--

साइंस का कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम कुछ बच्चे पेंट कर रहे हैं और कुछ--

ब्राउन कलर का और इसमें अ सिल्वर कलर की ग्रिल लगी हुई है उसके साथ में--

अ रेड और येलो कलर के फ्लावर्स के साथ उसकी--

घर दिखाई दे रहे हैं और सिल्वर कलर की ग्रिल्स इसके आ आजू बाजू लगी हुई और पानी का कलर ग्रीन दिखाई दे रहा--

गोभी है आलू है प्याज है और स्त्री इसको समान को खरीद रही है।

थैलिया पड़ी हुई दिखाई दे रही है थैलियां के ऊपर रेट लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं रेट्स है थ्री सेविंटीफाइव रुपीस --